यहां पर कुछ व्यक्ति बैठे हुये दिखाई दे रहे तथा कुछ कुर्सियां दिखाई दे रहे हैं जिस पर कुछ व्यक्ति बैठे हुये हैं ऊपर बड़ी-बड़ी लाइटे दिखाई दे रही हैं तथा कुछ खिड़कियाँ भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर कुछ सीटे दिखाई दे रही है तथा आगे कुछ कुर्सिया रखी दिखाई दे रही है एक सीट मे बॉटल रखा दिखाई दे रहा है ऊपर पंखा दिखाई दे रहा है ऊपर कुछ लाइब्रेरी जैसा बनाया गया है जिसपे--